काफी अच्छी जगह है और समुद्र का पानी बहोत साफ-सुथरा है बस यही है और टावर भी दिखाई दे रहे है।

यह भी जिम करने की जगह है काफी अच्छी दिखाई दे रही है जगह और अच्छा है रेड कलर की मैट भी बिछाई गई है।

ये टौ--र--नट बेस्टवेरानट है काफी अच्छा है।

ओर कुरान है ये कुरान मुसलमानो की---

और काफी अच्छी सजावट है।

और टिन छवि हुई है और काफी अच्छी जगह दिखाई दे रही है ये।